यह दृश्य में कई प्रकार की बैलूनों को टांगा गया है और यहां पे दो शटर भी लगी गई है जो सिल्वर रंग से रंगी हुई है।

यहां पे और भी कई सारे घर भी हैं और यहां पे मिट्टी भी दिख रहा है।

और यहां पे एक बैग भी रखा गया है और यहां पे एक बोतल भी रखा गया है और यहां पे दीवारों को कलर पिंक है।

यह दृश्य में दो कुर्सियां रखी गई है एक टेबल रखा गया है टेबल के ऊपर कीबोर्ड रखा गया है माउस रखा गया है।

यहां पे ग्रिल भी है और यहां पर दीवारों पर टाइल्स लगी हुई है।

और यहां पे लाइन के बोर्ड भी कई सारे लगे हुए हैं।

और यहां पे जमीनों पे टाइल्स लगा हुआ है।

और यहां पे कई सारी कुर्सियां रखी गई है और यहां पे दीवालो पे पोस्टर टंगी हुई है।

यह दृश्य में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहां पे कई सारे घास भी दिख रहे हैं।

और यहां पे एक रोड भी गया हुआ है और यहां पे एक बड़ा सा ऑफिस भी है।

और यहां पे दीवालों का कलर व्हाइट भी दिख रहा है।

और यहां पे कई सारे टाइल्स भी बिछी हुई है।

और यहां पे दीवालो का कलर व्हाइट भी है।

और यहां पे कई सारे अमरुद भी रखी गई हैं।

ये दृश्य में एक चैनगेट लगा हुआ है और ये चैनगेट ब्लैक रंग से रंगा हुआ है।

और यहां पे कई सरे त्रावर पे कई सारे पेंट रखी गई है।

और यहां पे कई सारे छोटे मोटे पौधे भी लगी हुई है।

और यहां पर स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है।

और यहां पे एक बाइक भी लगा हुआ है और यहां पे स्कूटी भी लगा हुआ है।

और यहां पे कई सारे मिट्टी भी हैं।

और यहां पे कई सारी लाइट भी टंगी हुई हैं।

और यहां पे कई सारे डिब्बे भी रखे गए हैं।

और यहां पे शीटा भी है और यहां पे शीशे भी है।

और यहां पे जमीनों पे टाइल्स भी बिछा हुआ है।

यह दृश्य में कई सारे प्लांट रखी गई है और यहां पर कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए भी है।

और यहां पे कई सारे व्यक्ति भी दिख रहे हैं और यहां पर कई सारे कुर्सियां भी दिख रही हैं।

और यहां पे दीवालो का कलर व्हाइट है ऑरेंज है अ ब्लू है।